उनको बता रहे हैं ऐसे वर्क ऐसे काम करो| वहाँ पे कुछ वर्क कर रहे हैं ड्रॉइंग का वर्क |

कुछ बच्चे बैठे हैं जो कागज से कुछ चीजें बना रहे हैं और यहा पर उनके पीछे एक गमला भी रखा हुआ है अ यहा पर पांच बच्चे बैठे हुए हैं।

खड़ी हुई है और यहाँ पर पानी के फुव्वारादार एक घेरा भी लगा है जो वहाँ पानी से फुहारा निकल रहा है।

दुल्हे को और दुल्हन बैठी हुई है और यहाँ पे बहुत अच्छी कपड़ों से बहुत अच्छी सजावत की गई है।

ये एक घर है और ये घर के सामने एक मैजिक अव एक आटो खड़ी हुईं है और यहां पर पानी भी भरा हुआ है रोड के किनारे और उसके बगल पर भी एक आटो खड़ी हुई है।

यह एक यह एक इंडियन ओवरसीज बैंक है और ये ए टी एम है ये एटीएम है और यहाँ पे एटीएम से सभी प्रकार के पैसे निकल जाते हैं।